अलग अलग वो फ्लावर पोर्ट में अलग अलग ओ फूल दिख रहे है।

और खम्भे है एक और पेड़ दिखाई दे रहा है।